यह एक कंप्यूटर सेंटर है।

इसका नाम यूनिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सेंटर है।

वैसी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जहां पर लोग पूजा करते नजर आ रहे हैं।

जहां की कई सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिस कारण पूरा बिल्डिंग सजा हुआ है।

हां कि सभी लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं।